इस कक्षा में दाहिने तरफ एक नोटिस बोर्ड लगा गया है।

इस बहुत सुंदर लग रहा है।

इस सेली टॉवर के पीछे घरों भी दिख रहे है।

घरों के ऊपर वॉटर टैंक भी दिख रहा है।

किरानो का सामान भी बिका जा रहा है।